और अन लाइट चालु है और रात का टाइम है।

और रोड का है सब कुछ खेत का बगीचा है सब कुछ सही दिख रहो।

और व्हाइट कलर में पत्रे है सिल्वर --

ये मस्जिद है आठ्मिनार है ये शाम का टाइम है उसको कुछ तो सूरज है और अजहान का टाइम है।

बहुत छोटे खिडक्या है अन्दर जाने के वास्ते रोड है।